तथा इसके बाहर काफी सारी छोटी-छोटी घाँस उगी हुई हैं।

गोल स्तंभ हैं तथा बीच में एक बगान है। जिसपे हरी-हरी छोटी-छोटी घास हैं।

यहाँ एक दाढ़ी बाल काटने वाले की दुकान है।

यहाँ का नाम बाल दाढ़ी स्पा एण्ड सलून है।

नदी के बीचों बीच पूल बने हुये हैं।

लगा हुआ है इसके दरवाजों पे पोस्टर चिपका हुआ है।

वहाँ दो रोशनदान बनाए गए हैं।

आलू ज़मीन के नीचे उगते हैं तथा सीधे किसानों द्वारा खोद कर बाहर निकाले जाते हैं।